बिल्डिंग के बाहर एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है।

पेट्रोल पंप को लाइटों से सजाया गया है।

यहां पर हमें एक खाली मैदान परिसर दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक छोटी सी नदी गुजरती हुई नजर आ रही है।

एक बड़ी सी इमारत यहां से आसानी से देखी जा सकती है।

नीचे की तरफ पूरी जमीन टाइल्स से बनाई गई है।

एक यहां पर महिला मौजूद है जिसके हाथ में चाय का कप है।

दरवाजे पर कई तरह के इंस्ट्रक्शन भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक वाहन भी यहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।